यह एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना है| कारखाने के अंदर बहुत सारी मशीने दिखाई --

दे रही है और वहाँ पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है और एक नल के अंदर में से कुछ निकल रहा है।

या हो गया है और यहाँ पर बहुत सारे फूल भी लगे हुए है और आस-पास बहुत सारी कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही है।